यह बहुत सुंदर जगह दिखने में लग र --

जहां पे हरे रंग के एक घर है जिसमें सफेद रंग का बॉर्डर भी है

यहां एक दिया जलाने वाला बड़ा लैंप रखा हुआ है जो चांदी का है यहां और भी--

जिसके कान मे इयरफोन है इयरफोन का रंग सफेद है इसने ब्लू कलर की शर्ट और ब्राउन कलर की जैकेट पहना है।

यहां बहुत सारे लोग हैं यहां जमीन पर लाल रंग का--

यह यहां एक बहुत बड़ा बालू का टीला है।

यहां कुर्सी टेबल तथा बेड रखा हुआ है ये सारी लकड़ियां की बनी हुई है।

यह मेज पर शीशा भी लगा है।